यह एक शादी का घर लग रहा है।

यह जगह देखने में बहोत सुंदर है।

पूरा रोड चारों तरफ हरियाली देखने मे ही एक अलग सा सुकून दे रही है।

यह झरना ऊपर से बहता हुआ नीचे आ रहा है।

यहाँ पर लोग एक त्यौहार मना रहे हैं।